बस डेपो के ऊपर कई सारे यात्री बस की राह देख रहे हैं और वहाँ पे खड़े हुए है ।

एक बाइक और एक साइकिल भी खड़ी है और एक व्यक्ति एस.बी.आई. के ए.टी.एम. के सामने खड़ा हुआ है।

यहाँ पे एक बड़ी सी नदी है नदी के अंदर बहुत सारा पानी है और नदी के किनारे की ओर --

यह पे एक बड़ा सा मैदान है और उसके ऊपर एक कच्ची सी सड़क है।